पीछे जो है फ्लाईओवर बना हुआ है।

सामने जो है पानी है दो नाव है नाव के अंदर जो है --

रेड बस के आगे आदमी है पीछे पेड़ लगा हुआ है पानी नीचे गिरा हुआ है।

सामने ग्राउंड है ग्राउंड में जो है लोहे का स्तम्भ बना हुआ है सामने बड़े-बड़े पेड़ है ग्राउंड में जो है छोटी-छोटी --